एक हेयर सैलून का इमेज है भैया कटिंग करा रहे हैं इनकी कटिंग का पैक वाला पोर्शन कि ये फोटो है।

ये जो सामने शटर लगा हुआ है ये कहीं का बिल्डिंग का मैन गेट है सामने कई सारी बाइक्स रखी हुई है साइकिल है सामने ऊपर जाने के लिए --

गाइस सामने नदी है उपर ब्रिज है आसमान है ये नदी काफी बड़ी है इसे पार करने के लिए पुल बनाया है एक पुल आधा बना हुआ है एक पुल कम्पलीट बना हुआ है जिसको एंगल लगाए गए हैं।

ये किसी टेम्पल का इमेज है कई सारे भगवान बैठे हुए है खड़े हुए है।

पंडित जी खड़े है सामने उनके जस्ट सामने पहाड़ भी बनाया गया है मूर्ति के जस्ट सामने की सारे लोग उनके दर्शन करने को आए है।

आई जी स्कूल का व्यू है। मैम बच्चों को ओबजर्व कर रही हैं। इस स्कूल को व्हाइट एण्ड पिंक कलर से पेंट किया गया है।

ये स्कूल का फ्रंट गेट है चैनल लगा हुआ हैं सामने नीले कलर से पेंट है टीचर खड़े हुए हैं पहलेमैम और सर खड़े हुए हैं ।

सामने काफी बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं लैंप बना रहे हैं का प्रोजेक्ट है बच्चे लाल और नीले कलर की ड्रेस पहने हुए हैं।